प्लेट का रंग सफेद है चार प्लेट और एक बाटी है।

इस पर बैग भी लटकाया हुआ दिखाई दे रहा है।

कमरे का रंग सफेद है कमरे का दरवाजा खुला रखा है।

दरवाजे के ऊपर भगवान का मूर्ति लगा रखा है।

ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं पंखे के सामने ट्यूबलाइट भी है कमरा का रंग सफेद नीला है।

कुर्सी का रंग काला है।

तस्वीर में मुझे एक घर का अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है।

दीवार पर खिड़की भी है खिड़की में सफेद कलर का पर्दा लगा हुआ है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारा डक्ची दिखाई दे रहा है।